यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्हें पढ़ना भी चाहिए यह बहुत अच्छा काम कर रहे है क्योंकि यहां ऐसा ही पढ़ना चाहिए बहुत सारे बच्चे बैग लेकर भी आए हैं दो बैनर लगाए गए हैं जो की अति सुंदर काम हो रहा है यहां पर बहुत अच्छे हैं।